यहाँ पर फेड्राल बैंक एटीएम लिखा हुआ है बोर्ड लेनी नीले रंग का ऊपर की तरफ --

और फोकस लगा हुआ है।

औ फूल लग अ सजे हुए हैं।

और एक गेट ब दरवाज़ा लगा हुआ है।

जिन्होंने अ ठंड के कपड़े पहन रखे हैं।

जिस पर उ जिसके ऊपर एक बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

और बैट्स पर लिखा हुआ एसएस एडिडॉस टोन एस एस और बै--